एक सीधा रोड जा रहा है जिसमें कुछ अ सीमेंट का ईट बिछाया गया है और एक साइड से बोहोत सारा कचरा-वचरा है कुछ पत्ते झरे हुए गिरे हैं।

एक आदमी खड़ा हुआ है और पानी को देख रहा है बहुत गहरा पानी है कुछ पानी में गंदगी भी जमी है काई है एल्गी है।

एक वर्कर है जो की ग्रीन कलर के शर्ट में और अ ऊपर से ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने हुए है बंदी है और वाइट कलर के जैकेट है।